सामने एक स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में रात का समय है सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है।

इस फोटो में कमरा दिखाई दे रहा है जिसकी जो दीवार है वो हरे रंग की है यहां पर खिड़की दिखाई दे रही है।

फर्श दिखाई दे रहा है एक मशीन रखी--

एक पे दो हरे रंग की बेडशीट बिछी हुई हैं एक पे एक--